नीचे घास है। पीछे काले कलर का आसमान दिख रहा है और सब यहाँ पे बारी-बारी अपनी फोटो खिचा रहे है।

बच्चे नीचे जमीन पर बैठकर स्केच कर रहे है और उनको ऊपर मदर देख रही है उनको सबको पढ़ा रही है बता रही है कैसे करना है पीछे सफ़ेद कलर की दीवार है पिले कलर का वायर लटका हुआ है लाल कलर का भी दीवार पे पेंट है।

ये एक स्कूल में जिसमें के ड्राइंग कॉम्पिटिशन चल रहा है सारे बच्चों के पास क्राफ्ट पेपर होंगे सब क्राफ्ट पेपर से अपने - अपने ड्राइंग पे कलाएं दिखा रहे है।

ये एक स्कूल में बहुत से विद्यार्थी दीवार से लग कर बैठे हुए है सब अपनी- अपनी कलाएँ दिखा रहे है क्राफ्ट है सबके पास कलर्स है सबके पास ऊन है पन्नियाँ है पेंसिल है पीछे लाल कलर की बीच में से दीवारें नीचे से नीली है और ऊपर से पीली है और --

ये एक जनरल स्टोर है जिसमें की विभिन्न- विभिन्न प्रकार का समान मिलता है एक आदमी बाहर बैठा हुआ है जोकि न्यूज़ पेपर पढ़ रहा है अंदर बहुत सारा समान रखा हुआ हैं।

ये एक स्कूल है जिसमे की बच्चे कॉम्पिटीशन में भाग लिए हुए है सबके पास क्राफ्ट पेपर है हाथ में कैंचिया है टेप है।

यह कोई डिस्को बार है जहाँ पे की बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही है और यहाँ पे बच्चियां भी डांस कर रही है एक लड़का भी डांस कर रहा है बहुत सारी लाइटे दिख रही है जो की बहुत ही रंग --

ये सारी लडकीया बैठ कर यहाँ पे योगा कर रही है जो की तिरंगा कलर का झण्डा लगाई हुई है सबने सफ़ेद कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है नीचे ब्लैक कलर की सफ़ेद कलर विभिन्न विभिन्न प्रकार की पैनटे पहनी हुई है।

ये एक स्कूल है जिसमें के विद्यार्थी रंगोली में पार्टीसिपेट कर रहे हैं सारे विद्यार्थी बैठे हुए है रंगोली बना रहे है और अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे हैं।

सफ़ेद कलर की बोरी एक नीचे पड़ी हुई है और जमीन पर धूल दिख रही है और आदमी मास्क पहने हुए है कैप कप लगाए हुए है खुला हुआ आसमान है हरे-भरे पेड़ दिख--

जोकि ये छत में लगाने में डलेंगे और कथाई कलर की इसमें ईंटे लगी हुई है सफ़ेद खुला हुआ आसमान है हरे -भरे पेड़ है मजदूर सफ़ेद कलर की शर्ट पहने हुए है और नीचे लाल कलर का पाइप --